यह एक पिंजरा है जिसके अंदर दो जोड़ी रहते हैं तोते के मेरा भी मन था लेने-उने का पर क्या करें अभी जहाँ पर हैं न वो लेने ही पायेंगे कभी भी जायेंगे न लेगें ही लेकिन --

यह एक स्कूल है और यहाँ पर बच्चे खिलोने पर खिलोने बना रहें हैं और पढ़ रहें हैं और मैडम भी है यहाँ पर।

बहुत अभी भरा हुआ है और बन्दे यहाँ पर अभी स्नान करने आये हैं।

इधर पानी का बोतल है और ये खड़ा है और उसके पाव में एक्सरसाइज करवा रहा है और एक्सरसाइज सेहत के लिए अच्छा है।